पीछे काफी मशीन जिम की दिखाई पड़ रही है उसपे एक व्यक्ति खड़ा है।

उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगाया गया हैं जो पीले रंग का है और काला बॉडर उसमें हैं।

यहां पर सामने एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो जीसने टी शर्ट पहन रखा है।

पीछे एक दरवाजा दिखाई पड़ रहा है जो खुला हुआ है।

एक फ्यूल टैंक भी दिखाई पड़ रहा है।

एक शेड भी दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर हरे रंग का नेट लगा हुआ है।

जनरल शॉप के बाहर बोरियो में काफी चीजे रखी हुई है।

बोरी में आलू प्याज और सफेद रंग की बोरिया भी दिखाई दे रही है जो बांधी गई है।

बाई ओर एक काउंटर बना हुआ है वहाँ कुर्सी लगी हुई है काउंटर के ऊपर भी कुछ वस्तुएँ रखी गई हैं।

नीचे की के चेयर के ऊपर काला रंग का बैग रखा हुआ है।

वहां काफी बच्चियां सफेद रंग की गाउंस ड्रेस पहन के और टोपी लाल रंग का लगा के डांस कर रही हैं।

सामने जो दुकान दिखाई दे रहा है उसका नाम प्रगति बुक सेंटर है।

केक के ऊपर भी काफी बिस्कुट और चॉकलेट रखे हुए हैं जैसे किटकैट ।

फोटो में एक स्कूल का दृश्य है स्कूल में सामने यहां हॉल में कुछ बच्चियाँ नीचे बैठके कुछ ड्राइंग कर रही है।

सामने काफी होर्डिंग बोर्ड लगे हुए है जिसपे वी टू वी टू लिखा हुआ है।

ऊपर शीशे में काफी पुतले लगाए गए है जिनको कपड़े पहना के स्टेच्यू के रूप में रखा गया है।

बिल्डिंग का खूबसूरत है काफी।

दरवाजे के ऊपर कुछ बोर्ड्स भी लगे हुए जिसपे नेम प्लेट से है।

एक बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर माइक से कुछ गाता हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे बैकग्राउंड में सफेद रंग का चादर है और कुछ गुब्बारे लगाए गए हैं जो नारंगी सफेद जो पीले रंग के हैं।

वहां पे तीन टूटी फूटी नाव दिखाई पड़ रही है एक नाव लगभग डूब चुकी है एक में पानी भरा हुआ है।

बाहर में एक बोर्ड लिखा हुआ है यहां तंबाकू सेवन से कैंसर होता है लिखा हुआ है।

दाईने ओर एक स्टैंडी रखा हुआ ऊपर कुछ बलून से सजाए गए हैं।

इस फोटो में एक ऑफिस का चित्र है सामने एक बड़ा से काउंटर दिख रहा है जो सफेद रंग का है।

दीवार पे कुछ फोटो टंगे हुए है एक दिवाल घड़ी भी दिखाई दे रही है।

स्लैप बने हुए हैं जो ऊपर टीन के छज्जे भी लगे हुए हैं।